एक ये हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है इसमें सब डॉक्टर लोग है डॉक्टर लोग अपना अअ--

बहार पीछे वो पेड़ दिख रहा है चर्च बना हुआ है रेड कलर का।

खड़े हैं बीच में भगवान के पास एक लड़का बैठा हुआ है भगवान का मूर्ति है बड़ा सा--

ये प्लेग्राउंड दिख रहा है बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है जिसमें लड़के लोग फुटबॉल खेल रहे हैं।

पीछे बहुत अह बहुत पेड़ भी दिखाई दे रहा है यहां पर लड़ बहुत सारा बच्चे लोग है अह--

फुटबॉल खेलते हुए उनलोग का सामान भी दूर में रखा हुआ है बैग पीछे बहुत बिल्डिंग दिख रहा है।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

एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है। तालाब का पानी थोड़ा सा गंदा टाइप लग रहा है। साफ नहीं है।

ये स्कूल दिखाई दे रहा है ये गर्ल्स स्कूल दिखाई दे रहा है गर्ल्स स्कूल के बाहर अ--

ये एक बहोत बड़ा होटल दिखाई रहा है होटल क्या है तो--

यह एक शॉप जो है दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें पूरा बच्चे लोग को खिलौना का अह दुकान है जिसमें बच्चे लोग का--

एक जिम का जगह है इसमें जिम हो रहा है तो लड़के लोग सब जिम कर रहे है।

इनका मेसिन पूरा दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा जिम का जगह है जिम का ऊपर पूरा लाइट का शो --

मुझे एक प्ले ग्राउंड दिख रहा है जिसमे ए दो लड़की लोग भी अ क्रिकेट खेल रहा है क्रिकेट ग्राउ--

कर रहे निचे ईटा दिख रहा है और लोहे का कुछ सामान भी रखा हुआ है और यहां पर --